यहाँ पर हमें जैसे की बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है जोकि काफ़ी गंदे दिख रहे है यहाँ पर बहुत सारी मोटर साइकिले रखी हुई है जोकि काले कलर में जोकि बहुत ब्यूटीफुल लग रही है यहाँ पर साइकिले भी रखी हुई है।